अक्सर लोग बड्डे पार्टी मैरिज एनिवर्सरी और न्यू ईयर पार्टी में केक का प्रयोग करते हैं।

जो काली ट्रे में रखे है। इस कॉफी के कप के साथ दो चम्मच भी दिए गए हैं। एक चम्मच एक कप के अंदर --

कॉफी दो प्रकार की होती है कोल्ड कॉफी और हॉट कॉफी ।

स्विमिंग पूल का प्रयोग लोग अक्सर नहाने के लिए करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग नहाने के लिए आते हैं।

है जो नहा रहे हैं और कुछ खड़े हुए है। इस पूल के और पास हमें कुछ हरे-भरे प पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर इमाम साहब बैठकर लोगों को नमाज पढ़ाते हैं।

इस तस्वीर में हम देख सकते है कि हमारे सामने पहाड़ों का एक बोहोत ही खूबसूरत -सा मंजर हैं।

तिरंगे में एक अशोक चक्र भी होता है।

फल खाने में बोहोत ही स्वादिष्ट और मीठे होते हैं। फल खाने से --

दुकान में हर प्रकार के फूल रखे हुए हैं।

यहाँ पर हमें प्लास्टिक के फूलों की --

बनाए जाते हैं। इस पेट्रोल पंप के ओर पास एक छोटा सा गार्डेन है जिसमें --

ए छोटे-छोटे घास भी हैं। इस मैदान में बहुत सारे हरे-भरे पेड़-पौधे हैं। पेड़-पौधे --

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि हमारे सामने राजकीय महिला विद्यालय स्थित है।

यह स्कूल की एक तस्वीर है। जिसमें दो टीचर्स खड़े हुए हैं जो एक नीले और दूसरे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं।

यह शादी के लिए बनायीं गयी एक स्टेज है जिसमे तरह तरह के लइटो का प्रयोग किया गया है और इसमें लाल सफ़ेद --

फूल इन पौधों को बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं ये फूल मट्टी --

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा-सा पुल है। पुल के नीचे एक नदी है। यह नदी इसको और भी खूबसूरत बना रही है।

यह एक क्लास की तस्वीर है जिसमें बहोत सारे टेबल पड़ी हुई हैं जिस पर बच्चे बैठते हैं और इस क्लास में एक व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे अध्यापक --

हैं जैसे पीली हरी गुलाबी जिसपे बच्चे बैठ के झूला झूलते हैं।